और यहाँ पानी इ झरने की तरह बेह रहा है और पेड़ भी है |

अं सामने बहुत सारे दूकान है फेस्ट है इनफनिटी ब्यूटी पार्लर --

और वो येल्लो कलर का टोपी पेहना है और हाथ में पेचकश लिया है।

ये पंजाब नेशनल बैंक ए.टी.एम. है |